यह एक साइकल का चित्र है।

और इसका पिछला मोडगार्ड काले कलर का है और यह मैदान में खड़ी है।

यह एक हरी झाड़ी है जहां पर हरे हरे पौधे है।

और पौधों पर ये आदमी खाद गेर रहे है।

यह एक बस स्टैंड है।

जिसके बाहर लोहे की ग्लिर् का कवॉड़ लग रहे हैं।

और इसके बाहर गाड़ियां भी हैं और आदमी है।

और ऊपर छत सफेद है और छत पर काली काली पट्टियां हैं।

और इस सामने दो पुतले खड़े हैं।

और मनी ट्रांसफर टिकट बुकिंग बिल भुगतान भी है।

और ये खंबा एक स्कूटर की बराबर में है।

और इसके बाहर मट्टी मलवा भी पड़ा है।

और खिड़कियां है। खिड़कियां लीले कलर की --

और नीचे कालीन बिछ रही है नीले और लाल कलर के--

यह एक शादी पे शादी का मंडप है।

व सामने फूल है फूल सफेद और लाल कलर --

यह एक ट्रैक्टर सातसौ चौआलीस साैराज--

और नाव का कलर नीले कलर और काले कलर का है।

और यहां पीले कलर की दुकान में मीटर फिटिंग हुई हुई है।

यह एक मंदिर है जिसके बाहर तीन मोटरसाइकिल और बराबर में एक दीवार है।

और सामने सोने से कलर का पेंट हो रहा है।

और ये लाल और इसके पीछे एक नहर भी है।

और इसमें एक पुतला भी खड़ा है जिसका फेस सफेद है और उसकी सल्ट नीली है।

इस पर लिख रहा हैं व्यायाम शाला और ओपन जिम ।

और सामने लाल लाल सी लाइट लगी रही है।

मकान की अगली दीवार है जिसका रंग सफेद है।

यह एक दुकान का नक्शा है।

इस चित्र में दो बंदे चेयर पर बैठे हैं और चार बंदे खड़े हैं।

और यहां पर दवाई रखी हुई है मेज पर।